कुछ वृक्ष लगे हुए है और पानी में जो बहोत देखने में--

लिखा हुआ है यहां पे साक्षी इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है जओडीगंज चौक कटिहार में है इसमें बहुत--

ये कोई स्कूल है यहां पे गेट्स लगे हुए हैं इस पे पिंक कलर का बॉर्डर बिछाया गया है और उसमें बहोत सारे बच्चे व्हाइट कलर के कपड़े पहन कर--

ये हमारे कठियार साइड का तवर सून गैस एजेंसी है जहां पर तीन एजेंसियां बनायी गई है इसमें ब्लू कलर के--

यहाँ पे हर तरह हर कलर के टोटो लगे हुए हैं ग्रीन ब्लू कलर के टोटो है जिसमें व्यक्ति बैठ कर जा --